नमस्कार दोस्तों bash में loops पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम
कुछ उदाहरणों के साथ
for loop while loop के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबुंटू लिनक्स 1204 operating system
* gnu bash version 4110
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उपरोक्त की सलाह दी जाती है
loops के परिचय के साथ शुरू करते हैं
loops का उपयोग statements के समूह को बार बार निष्पादित करने के लिए किया जाता है
syntax को देखते हैं
for expression 123
statement 123
और यह for loop का अंत है
for loop का वैकल्पिक syntax हैः
for variable in sequence/range
statement 123
और for loop का अंत
पहले syntax का उपयोग करके for loop का एक उदाहरण देखते हैं
इस program में sum पहले n संख्याओं के योग की गणना कर रहे हैं
ध्यान दें हमारी फाइल का नाम for sh है
यह हमारी shebang line है
variable number यूजर द्वारा the गई value को store करेगा
value यहाँ एक integer है
अब sum 0 के रूप में variable sum को इनीशिलाइज करेंगे
यह वह है जहाँ से हम for loop शुरू करते हैं
सबसे पहले हम i से 1 इनीशिलाइज करते हैं
फिर हम जाँचते हैं कि क्या i number से कम या बराबर है
अब यहाँ sum sum की गणना sum + i के रूप में करते हैं
और फिर हम इसे print करते हैं
इसके बाद हम i की value एक से बढाते हैं
और तब तक जाँचते हैं जब तक यह condition false नहीं होती
for loop से बाहर on पर यह message printed होता है
program को निष्पादित करें और देखें कि क्या होता है
terminal पर type करें chmod + x for sh
फिर type करें: /for sh
मैं input संख्या के रूप में 5 प्रविष्ट करूँगी
sum जिसकी i की प्रत्येक value के लिए गणना की गई है प्रदर्शित होता है
उसके बाद output की अंतिम line प्रदर्शित होती है
sum of first n numbers is 15
अब program के flow को देखते हैं
windows का आकार बदलें
पहले हमारे पास i की value 1 है
उसके बाद हम जाँचते हैं कि क्या 15 से कम या उसके बराबर है
क्योंकि condition true है sum sum की गणना 0 + 1 के रूप में करते हैं
अब हमारे पास sum 1 है
फिर sum sum अर्थात 1 print करते हैं
फिर i 1 द्वारा बढता है और i की नई value 2 है
फिर हम जाँचते हैं कि क्या 25 से कम या उसके बराबर है
condition true है और अब sum 1 + 2 अर्थात 3 होगा
फिर i 1 द्वारा बढता है और फिर i की नई value 3 है
और हमें sum 6 प्राप्त होता है
script sum में पिछली value से i की अगली value जोडना जारी रखेगा
यह जारी रहेगा जब तक i <= 5 false नहीं होता
for loop से बाहर निकलने पर अंतिम message printed होता है
दूसरे syntax का उपयोग करके for लूप का अन्य उदाहरण देखते हैं
मैंने इस file में code लिखा है और forloop sh named दिया है
यह साधारण program एक directory में files को सूचीबद्ध करेगा
यह shebang line है
फिर हमारे पास for loop है
ls command directory के कंटेंट को सूचीबद्ध करता है
1 hyphen one प्रत्येक line में file को सूचीबद्ध करता है
यह आपके home directory में मौजूद सभी files को सूचीबद्ध करेगा
यह for loop का अंत है
अब स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टर्मिनल पर टाइप करके
chmod + x forloop sh
type करें /forloop sh
यह home directory में मौजूद सभी files को सूचीबद्ध करेगा
अब हम while loop के बारे में सीखेंगे
पहले syntax को समझते हैं
while condition statement 123 while लूप का अंत
अर्थात while loop निष्पादित होगा जब तक condition true होती है
while loop का एक उदाहरण देखें
यहाँ मैने इसको while sh named दिया है
इस program में sum दिए गए श्रेणी के भीतर sum संख्या के योग की गणना करेगें
code पर जाएँ
यहाँ हम यूजर से संख्या को लेते हैं और इसे variable number में संचित करते हैं
इसके बाद sum variables i और sum को घोषित करते हैं और उन्हें 0 से इनीशिलाइज करते हैं
अब यह while condition है
यहाँ हम जाँचते हैं कि i यूजर द्वारा दी गई number की value से कम या बराबर है
फिर sum i की value को sum की value में जोडकर sum की गणना करते हैं
फिर हम i की value 2 बढाते हैं
यह सुनिश्चित करेगा कि हम केवल सम संख्याओं को जोड रहे हैं
और while loop दोहराया जाता है जब तक i की value number की value से अधिक होती है
जब sum while loop से बाहर निकलते हैं sum दी गई श्रेणी में सभी sum संख्याओं के योग को print करते हैं
program को निष्पादित करें
terminal पर type करें
chmod + x while sh
/while sh
मैं अपने input के रूप में 15 दूँगी
output की अंतिम line हैः
sum of even numbers within the given range is 56
मैं window का आकार बदलती हूँ और output को समझाती हूँ
पहले हम जाँचते हैं कि क्या i जो कि 0 है number से कम या बराबर है जो कि 15 है
condition true है इसलिए sum 0 + 0 अर्थात 0 होगा
अब i 2 से बढता है और i की now value 2 होती है
फिर हम जाँचते हैं यदि 215 से कम या बराबर है
condition फिर से true होती है अतः हम 0 + 2 जोडते हैं
अब sum की value 2 है
फिर से i की value 2 से बढती है
अतः अब i की value 2 + 2 होगी अर्थात 4
और sum की अगली value 4 + 2 होगी अर्थात 6
इसी प्रकार script i की पिछली value में 2 जोडना जारी रखेगा जब तक यह 15 से अधिक नहीं होता
और हमें योग की कुल value 56 प्राप्त होती है
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
संक्षेप में इस tutorial में हमने for loop के दो अलगअलग syntax के बारे में सीखा और हमने while loop के बारे में भी सीखा
नियत कार्य के रूप में पहले n अभाज्य संख्याओं के योग को ज्ञात कीजिए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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spokentutorialorg/nmeictintro
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
धन्यवाद